छोटा एक मंदिर बना है जिसमें बुद्ध भगवान का--

खेल का मैदान है जिसमें प्लेयर सभी साइड हैं और--

देखने वालें व्यक्तियों की संख्या भी बहुत--

और सामने में एक बाल्टी है उसके ऊपर ब्रेड रखा हुआ है और सामने में बहोत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें कुछ कुछ मटेरियल है।